बैकग्राउंड में कुछ जिम के समान भी दिख रहे हैं जिससे जिम किया जाता है।

इस पिक्चर मे कुछ सजे हुए घर --

कुछ बोल रहे या समझा रहे।